यह हमारे इलाके का एक कौंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पर एक सुन्दर सा घर बनाना का काम चल रहा है घर के काम के लिए यहाँ पर --

सामने एक सड़क है यहाँ पर हर वक्त कार बाइक आता जाता रहता है।

ये डिश बहोत ही टेस्टी है इस डिश को बहोत अच्छी से सर्व किया जाता है चाटनी और म्योनीज के साथ ।

टानेल भी है और छोटे-छोटे सुरंग भी है यहाँ पर लोग घुमने के लिए आते है और फोटोशूट भी कराता है ।

चादर बिछिया हुआ है यहाँ पर लोग स्कू ड्राइविंग कर रहा है यहाँ का नजारा बहुत ही खुबसूरत है।

यहाँ पर हर वक्त गार्ड्स लोग गार्ड् देता है।

प्लेटफार्म उजाला रहता है ढ़ेर सारा लाइटिंग है यहाँ पर --

ये हमारे ईलाके का एक एअरपोर्ट है यहाँ पर एक एयरोप्लेन अपनी उड़ान ले रहा है ये एयरोप्लेन बहुत जल्द आसमान में --